अंदर हमें एक बिस्तर दिखाई दे रहा है जिसपे नीला रंग की बेडशीट बिछाई गई हुई है।

बाहर हमें फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे दीवार दिखाई दे रहा है दीवार के आगे कुछ बर्तन रखे हुए हैं और दीवार के पीछे हम पेड़ पौधे देख सकते हैं।

इस चित्र में हमें एक सफेद रंग की वैन दिखाई पड़ रही है।

इनमें से एक व्यक्ति ने पीले रंग के कपड़े पहनी है।

घर के आँगन में हमें हरी घास दिखाई दे रही है।

मूर्ति का रंग सफेद है।

नील रंग की गाड़ी दिखाई पड़ रही है।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाया गया है जहां पे नौ बच्चे हैं।

जलेबी का रंग ऑरेंज है।

एक स्क्रीन पर हमें छे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

बाहर बोर्ड में कैनोन लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ये शाम का समय है।

लड़कों ने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई है।

गेट का रंग नीला है और अंदर स्कूल का रंग भी नीला और सफेद है।

इस चित्र में हम साफ देख सकते हैं कि ये रात का समय है।

इस चित्र में हम एक दुकान की तस्वीर देख सकते हैं।

एक स्कूल भी दिखाई दे रहा है।

बड़ी बड़ी सफेद रंग की थैलियां भी दिखाई दे रही है।

घर का रंग सफेद है।

इस चित्र में हमें एक पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बहुत सारी कपो को लटकाया गया है और कुछ को उसके नीचे रखा हुआ है।